यहाँ पे एक मकान है इसमें येलो कलर है इसके एक गेट दिखाई दे रहा है ऊपर आसमान दिखाई दे रहा है। नीचे मिट्टी दिखाई दे रही है। साइड में --

व्हाइट कलर में मकान दिखाई दे रहे हैं लाइटें दिखाई दे रही हैं जमीन दिखाई दे रही है और नीचे येलो कलर में पट्टा दिखाई --

साइकिल का ठेला दिखाई दे रहा है इसमें माइक लगे हुए हैं एक झंडे का आकार बना हुआ है वहाँ पे झंडा लहराता एक बिल बिल्डिंग दिखाई दे रही --

वहाँ कपड़े की शॉप दिखाई दे रही है वहाँ पे डमीयां दिखाई दे रही हैआसमान दिखाई दे रहा है जमीन दिखाई दे रही है बहोत सारे लोग दिखाई दे रहे हैं इस बिल्डिंग का मेंहदी कलर है।

हरे पत्ते दिखाई रहे हैं एक रेड कलर मे कार दिखाई दे रही है व्हाइट कलर में एक पहिया दिखाई दे रहा है और जमीन दिखाई दे रही है।

उह् यहाँ पर एक दूकान दिखाई दे रही है वहाँ पर बहुत सारे डब्बे रखे हुए है कुरकुरे की थैली दिखाई दे रही है दिखाई दे रहे हैं डिब्बे में चॉकलेट रखा हुआ है एक फोनपे का क्यू_आर कोड दिखाई दे रहे हैं व्हाइट कलर के डिब्बे रखे हुए है।